कार दिखाई दे रही है यहाँ पे।

यहाँ सामने में रास्ते पे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग --

ओम बुक इंडि पॉट लिखा हुआ है। अंदर कुछ समान रखे हुए हैं।

घर वगैरह दिखाई दे रहा और या --

दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है सामने में --